सामने में एक बड़ा सा पौधा घर भी बनाया हुआ दिखाई दे रहा है।

एक आदमी इंडिया फ्लैग का रंगोली बना रहा है।

गिरजाघर का दरवाजा खुला हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां में एक लंबा सा टीना का घर भी बनाके है।

यहां में सफेद और नीले रंग की इमारत दिखाई दे रही है।

यहां में एक औरत और एक बच्चा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

ऊपर में बहुत सारे बिजली जलने वाला भी डिखाई डे रहा है।

सामने में मेज और कुर्सी भी रखी हुए दिखाई दे रहे है।

ये दरवाजा किसी मंदिर या परम्पारी घर का प्रवेश द्वार दिख रहा है।

बहुत सी मूर्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें कुछ लोग दिख रहे हैं।

घर का बाहर में एक कुर्सी भी रखा हुआ है।

एक लंबा सा इमारत भी दिखाई दे रहा है।

यह एक बहुत बड़ा राजमार्ग दिखाई दे रहा है।

दुकान में कुछ ग्राहक भी मौजूद हैं जो खरीदारी कर रहे हैं।

जहाज के ऊपर एक बड़ा केंद्र जैसा ढांचा है।

ऊपर में लाइट जल रहा है।